import marc file into koha पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे koha में marc फाइल इंपोर्ट करना और opac में इम्पोर्टेड डेटा सर्च करना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux os 1604
koha version 1605 और firefox web browser
आप अपनी पसंद के किसी भी अन्य वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science से परिचित होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
records को koha में इंपोर्ट दो तरीके से किया जाता है:
शुरू करने के लिए चलिए अपने superlibrarian के साथ koha में लॉगिन करें
होम पेज पर tools पर क्लिक करें
एक नया पेज खुलता है catalog सेक्शन में stage marc records for import पर क्लिक करें
शीर्षक stage marc records for import के साथ एक नया पेज खुलता है
stage records into the reservoir सेक्शन पर जाएँ
यहाँ select the file to stage के समीप browse पर क्लिक करें
फिर downloads फोल्डर पर जाएँ file upload नामक विंडो खुलता है
यहाँ testdatamrc नामक फाइल पर जाएँ
याद रखें हमने पहले के ट्यूटोरियल में testdatamrc फाइल बनाई थी
testdatamrc फ़ाइल को चुनें यदि पहले से नहीं चुना गया है और पेज के नीचे open बटन पर क्लिक करें
उसी पेज पर आप browse टैब के समीप testdatamrc नामक फाइल देंखेंगे
अब पेज के नीचे upload file पर क्लिक करें
आप भूरे रंग में upload progress बार देखेंगे
उपलोड 100% तक पूरा होने के बाद हमें कुछ विवरण भरने के लिए कहा जाता है
सबसे पहले comments about this file फिल्ड भरें
यह अपलोड की गई फाइल को koha में पहचानने के लिए उपयोगी है
मैं book data प्रविष्ट करूंगी
अगला record type है यहाँkoha डिफॉल्ट रूप से bibliographic चुनता है
इसी तरह character encoding के लिए koha डिफॉल्ट रूप से utf8 default चुनता है
फिर section look for existing records in catalog पर आएँ
इस section में record matching rule पर जाएँ
यदि आप मौजूदा रिकॉर्ड्स से मेल करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन से एक और ऑप्शन चुनें अर्थात isbn/issn number
अब हम action if matching record found पर आते हैं
koha डिफॉल्ट रूप से replace existing record with incoming record चुनता है
फिर action if no match is found आता है koha डिफॉल्ट रूप से add incoming record चुनता है
फिर हम check for embedded item record data सेक्शन पर आते हैं यहाँ yes और no दो ऑप्शन्स हैं
koha डिफॉल्ट रूप से yes चुनता है
how to process items के लिए koha डिफॉल्ट रूप से always add items चुनता है
अन्य ऑप्शन्स भी हैं आप अपनी वरीयता के अनुसार इनमें से कोई भी ऑप्शन्स चुन सकते हैं
पेज के नीचे stage for import बटन पर क्लिक करें आप नीले रंग के बार में job progress देखेंगे
जब प्रोग्रेस 100% तक पूरी हो जाती है तो शीर्षक stage marc records for import के साथ एक नया पेज खुलता है
ध्यान दें कि अब हमने सफलतापूर्वक डेटा इंपोर्ट किया है जो हमारे पास excel sheet में था
इसमें निम्नलिखित विवरण हैं
ध्यान दें कि आप अपने mrcडेटा के अनुसार अपने koha interface पर अलग वैल्यू देखेंगे
इस पेज पर शीर्षक के ऊपर आप दो ऑप्शन्स देखेंगे
ध्यान दें कि मैं stage marc records पर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही excel फाइल अर्थात testdata को इंपोर्ट किया है
यदि आपको किसी अन्य फाइल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता है तो stage marc records पर क्लिक करें और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया चरणों का पालन करें
इसके बाद हमें koha catalog में इंपोर्टrecords को मैनेज करना होगा तो manage staged records पर क्लिक करें
manage staged marc records › batch 6 नामक नया विंडो खुलता है
इस पेज पर koha यहां दिखाए गए वेल्यू के साथ निम्नलिखित fields भरता है
और निम्नलिखित fields के लिए koha डिफ़ॉल्ट रूप से इन प्रविष्टियों को ड्रॉप डाउन से चुनता है
लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रविष्टियों को अपने संबंधित ड्रॉपडाउन से बदल सकते हैं
फिर apply different matching rules नामक बटन है
आप database में records के दोहराव से बचने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं
अब add new bibliographic records into this framework पर जाएँ और ड्रॉपडाउन से books चुनें
फिर से आप अपने आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं
अब section manage staged marc records batch 6 पर आएँ मैं नीचे import this batch into the catalog टैब पर क्लिक करूंगी
हालांकि क्लिक करने से पहले हम section citation के माध्यम से जाएंगे
कृपया विशेष संख्याओं को नोट करें
अब नीचे import this batch into the catalog नामक बटन पर क्लिक करें
जब हम ऐसा करते हैं तो job progress bar प्रदर्शित होता है
जब प्रोग्रेस 100% तक पूरी हो जाती है तो एक नया पेज खुलता है
शीर्षक manage staged marc records › batch 6 के साथ
आपके इंपोर्ट को अंडो करना संभव है यदि आपको इंपोर्ट डेटा में गलती मिलती है तो इसे सही करने के लिए निम्न करें
सेक्शन के नीचे undo import into catalog टैब पर क्लिक करें
मैं यहां क्लिक नहीं करूंगी
अगला completed import of records है
यहां आपको records added updated का विवरण दिखाई देंगे
फिर आपको इंपोर्ट किए गए विवरणों के साथ section citation दिखाई देगा
एक बार इंपोर्ट पूरा होने के बाद नए record के लिए एक लिंक दिखाई देगा
यह इंपोर्ट किए गए प्रत्येक citation के दाहिने तरफ दिखाई देता है
अब हम पुष्टि करेंगे कि शीर्षक catalog में जोड़े गए हैं या नहीं
ऐसा करने के लिए उसी पेज के शीर्ष पर search the catalog फिल्ड पर जाएँ
अब में koha में records के इंपोर्ट की पुष्टि करने के लिए एक छोटा परीक्षण करूँगी
इसलिए मैं citation section में इंपोर्ट किए गए record में से किसी एक शीर्षक पर टाइप करूंगी
फिर field के दाईं ओर submit बटन पर क्लिक करें
inorganic chemistry housecroft catherine e नामक नया पेज खुलता है
koha search किए गए शीर्षक का परिणाम दिखाता है जो साबित करता है कि records सही से इंपोर्ट हुआ है
इसके साथ हमने marc को koha में इंपोर्ट किया है
संक्षेप में
नियतकार्य के लिए
संकेत:कृपया conversion of excel data to marc 21 format ट्यूटोरियल देखें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project का सारांश देता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया मिनट और सेकंड के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद